ये ट्रेन इस स्टेशन पर आती है।

यहां पर बोहोत से बच्चे भी अपने बाल कटवाने के लिए आते हैं।

और बहोत से लोग अपने शेविंग बनवाने के लिए भी आते हैं।

यहां पर जेंट्स के कपड़े टंगे हुए हैं ज्यादा तर यहाँ पर टी-शर्ट टंगी हुई हैं। ये बोहोत से लोग लेने के लिए आते हैं।

यह बच्चे गार्डन में बैठे हुए हैं। ये गार्डन जैसे विद्यालय का भी हो सकता है।

यह लड़के यहाँ पर बोहोत सी ल लोग जोर-जोर से --

ये रेस्टोरेंट जैसे भी अच्छा से हो सकता है।

केटीएम एजेंसी में है ये केटीएम बाइक तगड़ी बाइक है। सब में बाइको में सब प्यारी बाइक है।

ये हाथी है बोहोत --

शायद ग्लैमर नाम दिया है इस गाड़ी का ये सही है गाड़ी बोहोत तेज भागती है।

इस पे बैठने में मजा आता हैतगड़ी गाड़ी है।

इसमें ना कोई मिलावट है तेल में ये सही है तेल --

और इसमें एल.जी. की वाशिंग मशीन हैं इसमें बहुत तगड़ा है नंबर वन पर चलती है।

बोहोत प्यारा लग रहा है। इसमें लाइटे कितनी सुंदर लगीं हुई हैं।

और नो के बल्ले है। बहोत प्यारे-प्यारे बल्ले हैं।

सबसे अच्छी है ये बोहोत प्यारी है।

बहोत तगड़ा है ये मेडिकल अच्छा लग रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये।

ये ऑटो है। बहोत प्यारा ऑटो है। एसमे सवारियाँ बैठ कर जाती हैं। खड़े हुए हैं।

और इनमें सवारियां बैठके जाती हैं। नया ऑटो है ये। बहोत प्यारा लग रहा है।

ये ऑटो कि एजेंसी है। इसमे ऑटो बोहोत तगड़े बने हुए हैं। ये ऑटो बोहोत अच्छे-अच्छे बनते हैं।

बोहोत तगड़ा लग रहा है। ये सलून भी बोहोत अच्छा है ये।

यह आदमी मंदिर पर खड़ा है। इसमें पूजा करते हैं। सबसे अच्छा मंदिर है ये।